और ऊँचाई से यहाँ फोटो खीची हुई है।

पर एक दुकान सी है और यहाँ पर जो अंदर एक दुकान सी है पार्लर सा है ब्यूटी पार्लर सा।

और यहाँ पर जो है कई सारी बाइके पार्क की गयी हुई है बाहर अ काले रंग की और ये दुकानदार से जो है वे ह नीले रंग की और ऊपर के जो छत है वे हरे रंग की है लाइट का भी तार है टॉवर है।

गार्डन के अंदर बीच में ऐसी छत सी बनाई गयी है और इसके बाजु में पेड़ लगाए हुए है शो के पौधे छोटे- छोटे और एक थोड़ा जगह छोड कर और भी थोड़े पौधे लगाए गए है फूल लगाए गए है पिले रंग के सफ़ेद रंग के।

यहाँ पर एक स्लाइड है वे लाल और सफेद रंग की है और दो स्लाइड्स हैं वैसी और एक नीचे एक सीधा सा एक पुल है | उस तरफ वो स्लाईडस दूसरे तरफ जा रही है और अंदर आने का जो गेट है वे नीले रंग का है और पेड़ है।

मस्जिद है सफेद रंग की और हरे रंग की है | मस्जिद के ऊपर वाला जो कर्व पार्ट है उसके ऊपर चाँद लगाया गया हुआ है तारा लगाया गया हुआ है।

ये जो है एक बिल्डिंग है यह जो बिल्डिंग है वो सफेद रंग की है यहाँ पर कारण सा है और कई सारे पेड़ लगे हुये है वे हरे रंग के है और यहाँ पे जो आसमान है वो नीले रंग का है ।

उस तरफ बिल्डिंग के नीचे अंदर एक नीले रंग की छत सी भी बनाई गई हुई है और ये बिल्डिंग काफी लम्बी है और बड़ी भी है सफेद रंग की --

स्कूल है और यहाँ पर जो है बिल्डिंग जो है पीले और नारंगी रंग की है यहाँ पर कई लोग बाहर खड़े हुए है फॉर्म लेकर दरवाज़े जो है स्कूल के वे बंद है।

अंदर यहां पीले रंग की गाड़ी सी खड़ी हुई हैं दो पीले रंग की गाड़ी हुई है अंदर से जो वो है हरे रंग का है।

और यहाँ पर जो है अलग-अलग रंग के कपड़े रखे हुए हैं अलग-अलग रंग के काले नीले वगेरा और अलग-अलग रंग के यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है और यहाँ पर एक बैठने का ये भी है वहां पर एक आदमी बैठा हुआ है।